चित्र में मुझे एक बड़ा घर दिखाई दे रहा है।

घर के बगल मुझे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

चित्र में मुझे दीवाल में लगा हुआ मीटर दिखाई दे रहा है।

चित्र में मुझे प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है।

चित्र में मुझे एक शॉप खुली हुई दिख रही हैं।

सीनरी दिख रही है चित्र में मुझे गमले--

चित्र मे मुझे बस दिखाई दे रही है।

चित्र में मुझे लाइट दिख रही है।

चित्र में मुझे लोहे से बनी अलमारी टाइप --

चित्र में मुझे कच्चे घर में खपड़ा छाया दीख रहा है।

कोयला भरा हुआ दिख रहा है।